ये एक टंकी रखी हुई नज़र आ रही है टेबल रखी हुई दिख रही है उसपे बहुत सारा सामान रखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में एक गेम जोन नजर आ रहा है।

इस इमेज मे पूरा अंधेरा नजर आ रहा है कुछ--

इस इमेज में बहोत सारी बाथरूम गूची बाथरूम की सीट नजर आ रही है बैलून से सजा हुआ नजर--

आ रहा है रेड लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है।

टेबल फेन रखा हुआ नज़र आ रहा है कई बहोत सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं टेबल पे सामान रखा हुआ --

इस इमेज में एक बड़ा हाल नजर आ रहा है जिसमें--

अलग अलग तरह के सोफे नजर आ रहे हैं सामने की तरफ एक पेंटिंग लगी हुई दिखाई दे रही।

दिखाई दे रही है कुछ लोग बैठे भी नजर आ रहे हैं दुकानों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई--

इस इमेज में एक जिम नजर आ रहा है।